दुकान के बाहर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

भवन के पास कुछ लोग देखे जा सकते हैं।

कमरे में एक बेड है जिस पर फूलों की चादर बिछी हुई है।

यहां पर एक बोर्ड को दर्शाया गया है जो लोहे के फ्रेम से बना है।

कुछ लोग सड़क पर चल रहे हैं।

यह एक अस्पताल का कमरा है कमरे में एक बेड है।

द्वारा के पास दो छोटे छोटे भवन हैं।

यह एक ईसाई धर्म के लोगो का भवन है।

टीचर बच्चों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं।

दुकान में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं।

सभी वस्तुएं कांच और प्लास्टिक की हैं।

दुकान साफ सुथरी और सुसज्जित है।

सीढ़ियों पर कुछ पुतले रखे हुए हैं दुकान के बाहर एक व्यक्ति स्कूटर पर जा रहा है।

वे कागज से कुछ बना रहे हैं।

यहां पर लोगों की बहुत भीड़ है।

तीन महिलाएं मेज के पास कुर्सी पर बैठी है।

बिल्डिंग का कलर व्हाइट और ग्रे है बिल्डिंग नीले रंग के शीशों से चमक रही है।

यह एक चर्च है चर्च में एक क्रॉस है।

चर्च में प्रार्थना लिखी हुई है चर्च में रोशनी है।

दुकान में प्लास्टिक का समान है सामान अलग अलग रंग में है।

कुछ बच्चे मंच पर कार्यक्रम कर रहे हैं।

कुछ बच्चे मंच पर लेटे हुए हैं। पीछे कुर्सियां हैं जिन पर धवज रखा है।

दो आदमी निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं।

बजरी और रेत का ढेर लगा है।

एक केक टेबल पर रखा है। टेबल के पास कुछ व्यक्ति खड़े हैं। कुछ बच्चे पार्टी में हैं।

मकान में धातु से बने दो गेट दिखाई दे रहे हैं।